इधर पे एक चारच में एक अनुष्ठान हो रहा है। सामने एक फादर खड़ा हैं। उसके गला पे माला है। सामने एक टेबल के उपर एक फ्लावर बास हैं।

बोहोत सारी चीज है बासकेट में कुछ भी है इधर पे रोज़ बोहोत सारी लोग आती है। दियाल की कुछ रेक खाली है।

इधर पे एक लैंड दिख रहा है। लैंड बहोत बड़ा हैं। लैंड के चार पास कुछ बड़ा-बड़ा पेड़ है। कुछ छोटा-छोटा पेड़ है। कुछ बेठने के लिए चेयर भी दिख रहा हैं। कुछ डस्टबिन है।

इधर एक चर्च दिख रहा है। चर्च के अंदर एक फ़ादर खड़ा है। सामने एक टेबल दिख रहा है। दिआल पे कुछ पिचर है। की मूर्ति हैं।

सामने एक सड़क दिख रहा है। सड़क में एक बाइक खड़ा है। सड़क के पास एक कॉलेज के गेट है। यह गेट के बाहर दो लड़का खड़ा है।

इधर पे मेडिसिन की दुकान है। दुकान बहोत बड़ा है। दुकान की रेक में बोहोत सारी मेडिसिन दिख रहा है। सामने अलमारी में बोहोत सारी सिरप भी है बच्चा की मिल्क भी हैं। दुकान के अंदर एक दुकानदार खड़ा है।

फोटो के पास दो दुकान दिख रहा है | एक दुकान खुला है | दुकान के अंदर एक चेयर दिख रहा है | हां उसके सामने एक बड़ा सा गेट भी है ।

कुछ लोग खड़ा है एक सिक्यूरिटी गार्ड चेयर पे बैठे है एक लड़का भी बैठे है एक प्राइवेट कार दिख रहा है।

इधर पे रोज बहुत सारी लोग की भीड़ होती है इधर पे मिस्ठी की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है।

एप्पल से ढाबे में कुछ फ्रूट्स से इधर रोज बोहोत सारे लोग आती है फ्रूट्स के बीच में कुछ कागज की टुकड़ा दिख रहा है।